बहुत बड़ी खुबसूरत सी फूलो की दुकान है यहां पर एक औरत नजर आ रही है जिसने ने एक स्वेटर पहना हुआ है गले में दुप्पटा है कुर्ती पहनी हुई है।

सामने की तरफ है एक बड़ा-सा खंभा लगा हुवा है जिसमें से वायस निकल रहे है बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं छोटा-सा सा घर --

छोटा सा कमरा बना हुआ है यहां पर कांच का शोकेस बनाया गया है इस शौकस के अंदर नीचे का जो बेज जो है वो ब्राउन है इसके ऊपर कुछ गुड्डो को बिठाया गया है।

अ एक स्टार लगा हुआ है इसके अंदर बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई है एक बड़ा सा बेन लगा हुआ है एक बहुत ही खुबसूरत सा लेम्प लगा हुआ है दिन का टाईम है तो वो जल नही रहा है।